और यहां बहुत सारे टेबल्स चेयर्स पंखा लाइट्स वगैरा एक लड़की भी दिखाई दे रही है.

और बेग्स जोलिया बोतल और एक और लड़का है.

यहां पर अ अ कुछ गढ्ढे दो-तीन गढ्ढे दिखाई दे रहे हैं.

जुला जुलने वाला एक टावर दो टंकी दिख रहे हे ज़मीन दिख रहा हे घास फुस.

खिड़की दिखाई दे रहा अलमीरा भी दिखाई दे--

और एक घर दिखाई दे रहा हे.

यहां पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर दिख रहे हैं बहुत

पंखा दिख रहा है खिड़की दिख रहा है लाइट्स दिख रहा है.

टियर दिख रहा हे एलवेस्टर का घर दिख रहा हे. झ--

और पत्थर इसमें भरा हुआ दिखाई दे रहा--

और चार पांच बस भी दिखाई दे रहे हे.

ग्रीन ग्रीन हे.

एक नारियल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे--

और यहाँ खुट्टा जैसा लगा हुआ हे और इसमे तार का घेरा बाँधा हुआ हे.